और उसने सफ़ेद कलर के टी-शर्ट और ग्रे कलर का कुछ पैंट पहना है और वो टोपी लगाया है।

नीला आसमान दिख रहा है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है अगल-बगल कुछ खम्भे भी है ।

और कुछ मिरिंडा कलर का भी दिख रहे है।

काला आसमान दिख रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पे छूरे लगे है ।

एक दीवाल दिख रही है जो कि क्रीम कलर का उसमे पेंट हुआ है ।

उसमें खूब सारे बैलून लगे हैं लाल और सफ़ेद कलर के।